ओपेन का मतलब होता है कि ये यहाँ पे खुला हुआ ओ इ पि इ एन ओपेन का सिम्बोल लिखा मतलब की खुला हुआ है इसलिए यहाँ पे ओपेन लिखा हुआ --

और इसपे इसके अंदर में एक सीढ़ियाँ हैं जिसपे चढ़ के आप कही पे वहाँ आप चढ़ के सामान ले सकते हो।

ये जो गाड़ी है बहुत अच्छी है मार्वल के ऊपर रखी है मार्वल थोड़ी सी जगह में दिए गयी है बहुत ही अच्छा है और इसके आगे में ईंटा जैसा लगाया गया है इसमें दो पिलर है वो भी बहुत अच्छा है।

और इसके ऊपर में तो खाली जगह है। यहाँ पे जाके आप बैठोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से बहुत दूर पेड़-पौधे दिख रहे हैं। सामने में एक गाड़ी दिख रहा है। सामने में दो गाड़ी दिख रहा है जो बहुत ही अच्छे है।

यहाँ पे एक घर है जो बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारे समान रखे गए हैं।